एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है तथा कार के नीचे एक --

एक पिलर भी दिखाई दे रहा है।

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तथा कुछ बॉक्स भी पड़े हुए --

इसमें कई प्रकार के बिस्कुट भी पड़े है पाउच लटक रहे है।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है तथा यहां पर बहोत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

वह एक पास में मछली बहुत सी बेच बेचने बेच रही है और एक --

कटिंग करने का सामान रखा गया है इसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी --

यह शादी का समारोह लग रहा है जहां पर घर को पूरी तरह सजाया गया है यहां पर एक आदमी दिखाई दे रहे है।

और इसमें बहुत सा कार्य करना बाकी रह गया है।

तथा पीछे दो बेड भी नजर आ रहे हैं।

तथा यहां पर और भी लोग आते जाते दिखाई दे रहे है।

इसके पास में एक कूलर दिखाई दे रहा है तथा बहुत सारे बंद डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

बेड पर सफेद चद्दर बिछाई हुई है।

तथा रंग बिरंगे प्लास्टिक के टिफिन तथा और भी बहुत समान दिखाई दे रहा है।

अध्यापक भी घूमता हुआ नजर आ रहा है तथा बहुत सारे कंप्यूटर लगाए हुए नजर आ रहे हैं।

बच्चों ने सब ने अलग अलग तरह के कपड़े पेहन रखे हैं।

साथ में एक बाइक तथा एक कार भी नजर आ रही है तथा यहां पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम है इस जिम में एक व्यक्ति बैठकर कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक नारी नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है तथा इसके आसपास में और भी स्त्रियां नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं।